ये पार्क है ये पारक है ये यहाँ पर--

ऐ मेरे को कुछ लग रहा हे मोटर सोर्टर बना रहा हे इन लोग एक आदमी बना रा हे एक आदमी खड़ा हुआ हे--

टिन देख रहे हे हरा कलर का जो राड वगेरा लगा है ।

लग ड्राम वगेरा दिख रहा है लाइट भी अलार्म भी दिख रहा है ।

और उसका छिलका वगेरा पूरा हे उसका

यहाँ पर दो तीन गाडी दिख रहा है वो गाड़ी वगेरा बना रहा है यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और आदमी भी खड़ा हुआ है ले भी रहा है यहाँ पे लाइट लग हुआ है।

ये फुल वगेरा कोई बिखरा हुआ है।

और टोकरी वगेरा में भी हव और एक महिला भी है।